और बहुत सुन्दर लग रहा है यहाँ का सीन भी बहु --

प्रधान डाक घर है जो की बहुत अच्छा है ये पोस्ट और बहुत खूबसुरत भी है अच्छा खासा लग रहा है यहाँ पूर्णिया का जगह है जो की बहुत प्यारा लग रहा है देखने में।